दिखाई दे रहे है।

निर्माण कार्य चल रहा है --

पेट्रोल पंप है जहाँ पेट्रोल पंप के ऊपर --

चेयर लगा रखे है और--

यह दृश्य किसी सरकारी दफ़्तर के बाहर का है जहाँ --

यहाँ की स्कूल के कॉरिडोर में--

कुछ नावे चलती हुई दिखाई दे रही है।

बिछा रखे है और रस्ते के साइड है और--

पहन रखा है और हाथ में दस्ताने पहने हुए है।

सैलून के बाहर एक बड़ा सा गुब्बारों का --

हेयर एक्सपर्ट प्रोफेशनल --